लगा हुआ है मास्क लगा रखा मुंह पे एक ने नहीं लगा रखा आप देख सकते हैं यहां पे --

एक लड़की ने येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई है एक ने ब्लू कलर की पहनी हुई है।

और यहां पे पेड़ पौधे लगे हुए है पाणि बहुत अच्छा दिख रहा है देख सकते हो आप--

देख सकते हो आप झूला झूल रहे हैं।

पी_डब्लू लिखा हुआ है। पी_डब्लू यहां पे चेयर भी रखी हुई है। चेयर ब्लैक कलर की है और यहां पे--

ब्राउन किया गुलाबी-गुलाबी कलर नीचे ग्रीन कलर की दिख रही है साड़ी ग्रीन कलर की दिख रही है।

यहां सफेद रंग की दिख रही है आप देख सकते हो यहां पे।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

मंदिर बन रहा है यहां पे आप देख सकते हो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ही सुंदर दिख रहा हैं।

ये भारतीय स्टेट बैंक है लिखा हुआ है यहां पे स्टेट बैंक ए_टी_एम लिखा हुआ है यहां पे।

दिख रहा है आप --

यह यहां आप देख सकते हो आप यहां पे एक आदमी बैठा हुआ है ये फोन ले रहा है और यहां पे --